एक झरना बेहता हुआ दिख रहा है एक आदमी का पैर दिख रहा है ऊपर आकाश साफ दिख रहा है आस-पास में पेड़-पौधे दिख रहे है नदी के बहाव तेज दिख रहे है।

आसपास में पेड़-पौधे दिख रहे है ऊपर आकाश साफ़ दिख रहा है।

कुछ टूल्स नीचे रखे हुए दिख रहे है यह इन्वेस्टर से घिरा हुआ दिख रहा है जिसमें बहुत सारी मशीनें दिख रही हैं।

सामने एक मूर्ति दिख रही है मूर्ति राधा और कृष्ण भगवान की है कृष्ण भगवान ने हाथ में बासुरी ले रखा है।

बगल में बहोत सारे पहाड़ दिख रहे है।

ऊपर आसमान साफ़ नज़र आ रहा है अगल-बगल हरियाली सी लग रही है।

में फल सजे हुए दिख रहे है फल के कैरोटो के ऊपर फल रखे हुए दिख रहे है यहाँ पे अनार अंगूर है।

केला और भी कई तरह के फल रखे हुए दिख रहे है।